पीछे अंदर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं पेड़ भी दिख रहे हैं आसपास बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं एक पोस्ट भी लगा हुआ है अंदर बहुत सारे लोग--

ये एक जिम है यहा पर बहुत सारी पुश अप करने की मशीने रखी हुई है और नोर्माली तीन मशीने है यह जिम जो व्हाइट कलर से पोता हुवा है।

एक रेसटूरेंट हैयहा पे बाइक खड़ी हैतीन और एक मारुति खड़ी है और नाइट का समय है यहा लाइट भी जल रही है और--

खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं और जाड़ पेड़ है और कुछ पानी भी भरा हुआ है।